बिल्डिंग मे कई सारे ए_सी लगे हुए हैं कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं सामने कैटल--

ग्रे कलर के कार के पीछे एक रेड कलर की कार खड़ी है उसके पीछे एक दो लोग खड़े हैं।

एक रेड कलर की कार है उसके सामने एक बंदा खड़ा है।

ये एक शूज का शॉप है इसमे कई सारे शूज रखे हुए है काफी सुंदर-सुंदर।

एक एक गार्डन है रात का समय है लाईटें जल रही हैं सामने कई सारे पेड़ हैं पेड़ हैं सामने --

एक इंसान खड़ा हुआ है वो सामने कैमरा की तरफ देख रहा है शायद उसके फूल का शॉप है।

लिटेरा वैली स्कूल का नाम है सामने व्हाइट कलर की कार है एक एक ब्लैक कलर की है सामने पेड़ हैं।

यहाँ पे एक लाईटे लगी हुई झूमर टाइप की लाइट काफी में चेयर्स टेबल्स लगे हुए हैं।

दीवार है दीवार के ऊपर बलून्स टंगे हुए हैं कुछ ब्लू व्हाइट मे बलून्स टंगे हुए हैं।

वो चेयर पे बैठी हुई है उसने पर्पल और पर्पल कलर की टॉप ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई है बाल खोली हुई है।

एक बतख नीचे चोंच से कुछ कर रहा है और एक बतख सामने की तरफ देख रहा है।

बे मेरुन कलर का डे ब्राउन कलर का डेकोरेट किया गया है कई-काई--

काफी सारे चेयर्स टेबल रखे हुए हैं पुल में पानी--

ये एक फूल का शॉप है सामने एक बड़ी सी माला टंगी हुई है।

बड़ी सी माला है उसपे कई सारे फुल्स लगे हुए हैं सुंदर लग रहा है।

ये एस_बी_आई का है ए_टी_एम है सामने ए_टी_एम के अंदर लाइट जल रही है सामने लोग अंदर लोग है शायद।

ए_टी_एम से पैसे निकालते होंगे सब नीचे सीढी है छोटे-छोटे टाइप रात का टाइम है।

कुछ सामान रखे हुए हैं कुछ चेयर्स रखी हुई हैं।

ये किराने की दुकान है सामने चिप्स कुरकुरे पैकेट टंगे हुए है शैम्पु वैम्पु रखे हुए हैं।

चॉकलेट्स के डब्बे है अंडा रखा हुआ है एक स्प्राइट की बोतल है।

इसमें ग्रीन ग्रीन छोटे-छोटे घास है सामने कई सारे गाड़ियां लगी हुई हैं एक टेम्पो लगा हुआ है।

तीन लेडी खड़ी है एक पंडित जी हैं वो बैग से कुछ निकाल रहे है शायद--

और एक पंडित जी वर वधू की शादी करा रहे हैं।